बगल मे घास बिछायी गयी है बहुत अच्छा ल--

हरि कुछ घास है बहुत सुंदरसा नजारा है गीली-गीली घास है रस्ता गिला है।

अच्छा अच्छा मौसम है कुछ टंगा हुआ है इनके ऊपर बहोत सुंदर नजारा है।

हवाई पट्टी हवाई पट्टी है। प्लेन खड़ा हुआ है।